और गुंबज जैसा भी गुंबज भी निकला हुआ है और हॉर्न भी लगा हुआ --

ये जो लोकेसन हैवो काफी बेटर है और यहा पर शो भी हो रहा है हाई वे है और ये फॉर लाइन है आगे गाड़ी जा रहा है ओटो काफी सारे खड़े हुए लाइन में ।

प्रोफेशनल लोग यहा पे बाल काटते है और एक लोगो भी लगा है लिखा हुआ भी एक गेट है अंदर एक आदमी बाल भी कटवा रहा है ।

ग्रीन कलर का मामाअर्थ का प्रोडक्ट है और एक व्हाइट कलर ब्लू कलर व्हाइट कलर का वो मामाअर्थ का प्रोडक्ट है। यहाँ पे बाल काटते हैं। ब्लू लाइट जल रहा है नाइस --

टाटा का बस है। बस काफी अच्छी है दिख भी रही है। रेड कलर की बस है। न्यू माला लगा हुआ है बस पे अंदर से भी बाहर से भी वायपर लगा हुआ है। बस अब थोड़ी देर में निकलेगी अपने लोकेशन पे रिच करने के लिए।

और पर्पल कलर का एक बोर्ड भी लगा है बगल में बैनर लगा हुआ है व्हाइट कलर का दीवार है ए.टी.एम. है ओपन है पंजाब नेशनल बैंक का ए.टी.एम. --